यहाँ पे देखा जाए तो काफी सुन्दर दिखाई दे रहा ये टावर जोकि कोई गेट से कम नहीं है या तो फिर ही है उसके जस्ट आगे एक बड़ी बिल्डिंग है जोकि दिखने में खूबसूरत नज़र आ रही है।

जिसमे का कुछ यातायात के साधन आते जाते दिखाई दे रहे है बोर्ड भी लगे है सामने में यह--

यह बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर व घरेलू सामानो का का जो भी ही दिखाया गया है पोस्टर पे--

और बाइक से तो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बगल का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा इस में है।

यहाँ बाल कटिंग वाली दूकान है जिसमे कई क्वालिटी की चीज़ें इधर के बाल कट किये जाते है इसको देखने पे काफी अलग नज़र आ रहा है बाल का इसटाइल --